पेड काफी बड़े दिखाई दे रहे है घर के आस पास कुछ सामन रख हुआ है घर के बाहर कुछ पत्ते नज़र आ रहे है घर के बाहर कुछ मट्टियाँ नज़र आ रही है।

चर्च है चर्च काफी सुंदर लग रहा है चर्च का पीछे का हिस्सा गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है चर्च की दीवारे व्हाइट कलर की दिख रही है चर्च मे कुछ पंखे लगे हुए है।

यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग अन्डर कन्स्ट्रक्शन लग रही है यहाँ पर काफी ज्यादा लकड़ियाँ दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है। बिल्डिंग मे कांच दिख रहे है बिल्डिंग मे कुछ लोग नज़र आ रहे है बिल्डिंग मे कुछ मशीन नज़र आ रही है ।

सर्विस सेंटर है इसका कलर सफेद और पीला है यहाँ पर लाइट लगी हुई है यहाँ पे लिफ्ट पर एक कार खड़ी हुई है कार मारुति सुजुकी की है।

कॅफे के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं कॅफे पर बोर्ड लगा हुआ हैं एक बोर्ड पर ऑर्डर हिअर लिखा हुआ हैं एक बोर्ड पर पिकआप हिअर लिखा हुआ हैं कॅफे काफि ब्यूटीफुल लग रहा --

बाज़ू मे कुछ रैलिंग दिखाई दे रही है यहाँ का पानी बहते हुए नज़र आ रहा है पानी साफ दिख रहा है पानी सफेद दिख रहा है।

बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कुछ बच्चे सोते हुऐ नजर आ रहे हैं कुछ बच्चे लिखते हुऐ नजर आ रहे हैं।